और आजू बाजू में बैठने के लिए दिख रे हैं और सामने एक बड़ा सा कुर्सी ऊपर ये टेबल रखा गया है जो अच्छा दिख रहा है बड़ा खासा।

एक बैंक दिखती है जहां पर बैंक में काम कर रहा है दो वर्कर दो वर्कर्स कम कर रहे हैं।

ये किसी का ऑफिस दिख रहा है यहां पर वो टेबल वो कुर्सी और वो विंडोज रखे गए हैं और एल्यूमीनियम का पार्टीशन मारा गया है।

और बाजू में खिड़कियां दिखने रखे हुए बहुत सारे और एक मशीन दिख रही हैं सामने रखी हुई।

ये बड़ी सी मंदिर लग रही है जहां पर दो बच्चे मंदिर के ऊपर जा रहे हैं मंदिर के सीड से मंदिर के अंदर जा रहे हैं।

और सामने एक बड़ा सा खंबा भी दिख रहा है और उस खंभे पर बहोत सारे वायरा लगे हुए हैं और सामने कोई बॉडी दिख रही है अच्छी खासी।

बाइक मैकेनिक के समान दिख रहा है जैसे अ बाइक में छोड़ने का तेल हो--

ऊपर टीना का पार्टीशन है और आजू बाजू सामान दिख रहा है।

ये को जंगल का एरिया दिख रहा है जहां पर बहुत सारी घास उगी हुई है और कुछ झाड़ भी दिख रहे हैं।

ये एक जंगल का एरिया दिख रहा है और जंगल में पानी ठहरा हुआ है और चार आदमीयां दिख रहे हैं।

ये एक भागने की रेस दिख रही है जहां पर बहोत सारे लोग दौड़ रहे हैं बहोत सारी पब्लिक जमा हुई है बहोत सारे लोग देख रहे हैं।

ये छोटी सी दुकान दिख रही है दुकान में कोई भी नहीं दिख रहा है और दो छत्रियां लगे हुए हैं और बैक भी लगी हुई है।

ज्यादातर लेडीज दिख रही हैं और मंदिर के पीछे कुछ सजावट सजावट की गई है और मंदिर पीछे घर भी घर भी दिख रहा है बड़ा सा।